एक टेबल पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर एक गमला रखा हुआ है और एक घड़ी भी लगी हुई है।

इस तरफ भी एक टीन पड़ी हुई है और पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं एक टावर भी लगा हुआ है।

यह एक रास्ता दिखाई पड़ रही है जिसमें कुछ बच्चों को पहिए वाले जूते पहनाए जा रहे हैं।

इस तरफ एक उस पे एक टंकी रखी हुई है और इसमें बहुत सारे हिरण जो चर चुन रहे हैं और एक बाउंड्री जैसे खींची हुई है।

उस तरफ भी बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और बहुत सारे मकान भी बने हुए हैं।

उसमें दो तीन जीप पुलिस वालो की खड़ी हुई है यहां पर कुछ फैसला जैसा हो रहा है।

दो तीन पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं एक महिला भी खड़ी हुई है।